यह एक हाईवे रोड है इसपे ट्रैक है |

कुछ येल्लो दिख रहे हैं।

इसके ऊपर कुछ सामान रखे हुए हैं |

जिसका कलर ब्लू है।

एक करोड़ यहाँ बना हुआ है ।

बहुत सारे कचड़ा फेका हुआ है।

केले के पत्ते बहुत हैं।

कुछ पेपर हैं।